और उसके नीचे एक लेडीज खड़ी हुई है और उसमें एक खिड़की है औ एक डोर है।

और इसमें बहोत सारी सब्जियां है इसमें एक और भी बहोत सारे लोग शामिल हैं।

तहसील आर्कियोलॉजी म्यूजिक म्यूजिशियन डिपार्मेंट --

इस पिक्चर में एक पार्क दिखाया गया है और जिसमें--

टीन लगी हुई हैं और पिक्चर लेफ्ट साइड में वो टंकी लगी हुई है राइट साइड में

इस पिक्चर में बेड पर लेटे हुए एक कंकाल दिखाया गया है।

इसको साँस उँ उँ उँ सीधा साँस दिया जा रहा है और उस साइड में इसमें एक आईबॉल --

बनी हुई है और उसमें एक स्विच बोर्ड है।

इस पिक्चर में एक मिठाई की शॉप दिखाई गई--

और एक चेयर हैं हैं फैन हैं तकिया है।

होई है।

और बहोत सारे पड़े हुए हैं जहां पे एक खुला मैदान में जहा मिट्टी में पाइप दबाया गया है।